एक गुड़िया सेलो टेप बॉटल बैडमिंटन इत्यादि रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में सामने एक व्यक्ति कैमरे में अपनी फोटो लेता दिखाई दे रहा है।

इन सभी ने शॉल स्वेटर पहन रखा है अधिकतर महिलाएं दिख रही हैं।

पीछे बहुत सारी शॉप दिखाई दे रही हैं और बहुत सारे बोर्डस भी लगे हुए हैं सामने कई लोग बैठे हुए है।

साइकिल पर बैठा एक व्यक्ति सफेद शर्ट और काला पैंट पहने अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर एक जिम की लग रही है सामने पिलर और काले रंग की बहोत सारी जिम करने वाली मशीने रखी हुई है।

सामने ही हरे रंग का एक पौधा दिखाई दे रहा है इसके पीछे दो लोग बैठे दिख रहे हैं।

ट्रे भी ब्लैक कलर की ही है इसमें कुछ पैकेट्स रखी गई है यह शायद चीनी की लगती है।

यह तस्वीर एक जिम की लगती है सामने बहोत सारी जिम करने की मशीनें दिखाई दे रही है।

इसमें सात लोग एक ही तरीके का एक्सरसाइज या कुछ कर रहे हैं।

एक ए_सी है और एक लोगो है जिस पर डी_एन लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में सामने पानी दिखाई दे रहा है इसका रंग नीला है।

पीछे इमारत दिखाई दे रही है इसकी छते लाल तथा सफेद रंग की है।

सामने दो लंबे खड़े पोल दिखाई दे रहे हैं इनसे कई तारे लगी हुई हैं।

यह तस्वीर एक कैफे की है सामने एक बोर्ड पर मरीन ड्राइव कैफे लिखा हुआ है।

इसी की तरह पीछे और कई डेस्क बने हुए हैं ऊपर लाइट्स भी लगी हैं।

देखने से यह रेड फोर्ट की तरह यानी लाल किले की तरह लग रहा है।

इसके ऊपर ही नीले रंग का बोर्ड लगा है इस पर गणतंत्र द्वार लिखा हुआ है।

कृष्ण के हाथ में बांसुरी है दोनों ने मुकुट पहन रखा है।

यह तस्वीर किसी फैक्ट्री की लग रही है इसमें दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।